कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुवे दिखाई दे रहे है पास मे ही एक चैनल गट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा।

सामने ही एक लोहे की सीडी भी दिखाई दे रही है और उसके पास ही एक चद्दर सेट दिखाई दे रहा है और कुछ घास भी--